इस चित्र में हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पे सभी लोग फेस्टिवल मना रहे हैं।

और एक आदमी वहां पीले रंग का गुलाल उड़ा रहा है जो हमें दिख रहा हैऔर एक औरत साइड में बैठी हुई हमें नजर आ रही है।

जिसमे हमे एक ए_सी देखने को मिल रहा है।

इस चित्र में हमें देखने को मिल रहा है कि यह एक पार्क का फोटो है।

जिसमें हमें बहुत सारे पौधे नजर आ रहे हैं और बहुत सारे हमें पेर नजर आ रहे हैं और पीछे हमें बहुत सारी बिल्डिंग भी नजर आ रही हैं।

सुबह का समय है धूप भी हमें देखने को मिल रहा है।

और पार्क में हमें बहुत सारे गमले नजर आ रहे हैं और पार्क में हमे--

इस चित्र में हमें नजर आ रहा है।

और इसमें एक आदमी हमें देखने को मिल रहा है जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है।

इस चित्र में हमें देखने को मिल रहा है कि यह एक किसी गार्डन का फोटो है जिसमें हमें बहुत सारे--

चित्र में हमें देखने को मिल रहा है कि यह किसी घर के गार्डन है।

और यहां पे हमें एक वाइट कलर का घर भी नजर आ रहा है।

कुछ गिटार का रंग हमें नीले रंग का दिख रहा है और कुछ गिटार का रंग हमें पीले रंग का दिख रहा है।

इस चित्र में हमें नजर आ रहा है कि यह एक मछली मंडी है।

इस चित्र में हमें नजर आ रहा है कि यह एक अ बिल्डिंग है सामने और यहां पे हमें बहुत सारे गाड़ी लगे हुए दिख रहे हैं।

इस चित्र में हमें नजर आ रहा है कि यह एक--

एक पुतले के गोद में एक दूसरा पुतला है।

हमें यहां पे बहुत सारे पंखे भी देखने को मिल रहे हैं।

और यहां पे हमें बहुत सारे कुर्सी भी नजर आ रही है।

पर एक बहुत बड़ा घरी भी देखने को मिल रहा है।

और हमें एक ऐ_सी भी देखने को मिल रही है।

इस चित्र में हमें देखने को मिल रहा है।

यह एक दिन का समय है और यह एक पार्क दिख रहा है जहां पे बहुत बड़ा पोखर है।

इस चित्र में हमें नजर आ रहा है कि यहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेबर है।

कुछ लोग गिट्टी उठा रहे हैं कुछ लोग पानी पटा रहे हैं यहां पे घर का निर्माण हो रहा है।

यहां पे एक आदमी काम कर रहा है जो कि लेबर है।

यह एक डांसिंग रूम है यहां पे बहुत सारे आदमी डांस कर रहे हैं और यहां पे हमें एक ए_सी भी देखने को मिल रहा है जो कि वाइट कलर का है।

इस चित्र में हमें नजर आ रहा है कि यहां पे एक मगरमच्छ है।

जो कि और यहां पे हमें एक पानी भी नजर आ रहा है यह एक जू का फोटो है जहां पर मगरमच्छ को कैद करके रखा गया है।

और यहां पे हमें एक कार नजर लगी हुई दिख रही है और हमें एल्वेस्टर देखने को मिल रहा है और बहुत सारी स्कूटी भी देखने को मिल रही है।

इस चित्र में हमें नजर आ रहा है कि यह एक पाटलीपुत्र यूनिवर्सिटी पटना का है।

हाथ में लिए खारा दिख रहा है और एक हमें पीर दिख रहा है और छोटे-छोटे पौधे देखने को मिल रहे हैं।

हमें दिख रहा है कि यहां पे बाल कटाई हो रहा है।

जहां पे एक लड़के के हाथ में फोन है।

और उस लड़के ने चेक कलर की शर्ट पहन रखी है।

इस चित्र में हमें देखने को मिल रहा है कि यह एक पार्क है।

और हमें एक शीशा देखने को मिल रहा है।

और पोखर किनारे हमें घाट दिख रहा है।

इस चित्र में हमें एक हॉस्पिटल दिख रहा है।

वहां पे आपतकालीन दिख रहा है और यहां पे हमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो कि मार्क्स लगाए हुए हैं।